ये जो है नीचे पानी भरा हुआ है ऊपर जो है पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं।

ऊपर जो है नीला-नीला ऐसा आसमान दिख रहा है जिसमें रोड दिख रहा है।

एक अंकल जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऑटो दिख रहा है।